है। खूब पहाड़ हैं। पहाड़ पे घर बनल बा। घरवा ऐसे ऊबड़ खाबड़ बा। एही सा पेड़ बा।

अदमीया काला रंग के कपड़ा पहन ले बा और ऐ बगलिया से पानीयों भी दिखता ओहरिया पेड़ बा एठो ओही में फूल भी लउक़त बा।

हई बगलिया में एक ठी औरत के फोटो भी बनल बा दुकनिया में कुछ टांगल भी बा।